और हमको एक कार दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है और ये खुली हुई है।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

यहां पर भी हमको एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कमल के फूल पर बैठी हुई है इसके पीछे दीवाल है जो व्हाइट और ग्रीन कलर से पुती हुई है एक इनके सामने कोई पूजन कर रहे है।

इस फोटो में हम को यहाँ पे एक ऑटो दिख रहा है एक यहाँ पे बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है नीचे यहाँ पर बहुत कचरा दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हमको दिखाई दे र --

अभी ब्लैक कलर से यहाँ पर पुती हुई है ।